ये एक फूल की माला की तस्वीर है जिसमें लाल कलर के फूल और येलो कलर के फूल खिल सजी हुई है यह बहुत ही मोटे माला है जो की टंगी हुई है ।

सामने बहुत बड़े-बड़े पंखे रखे हुए हैं । जो पांच मुंह के हैं ।

औरतें बहुत सारी इयररिंग्स खरीद रही हैं यहाँ पे चार औरते मौजूद हैं जो कि इयररिंग्स खरीद रही हैं और बहुत सारे प्रकार के यहाँ पे इयररिंग्स भी मिल रही है।